लेकिन इसका अ बनाया हुआ स्ट्रक्चर ब काफी सुन्दर लग रहा है अट्रैक्टिव लग रहा है।

और किसी साइट या सर्च पे अ एक दूसरे से बात कर रहे है और --

और ऑफिस सस में सब लोग बैठे हुए हैं।

और डेकोरेटिव आइटम है।

एक्टिव फिटनेस कर रहे है।

बहुत सारा ब्रांचेज है जो उसका वो चारो तरफ से घेरा हुआ है काफी पुराना --

यह होटल का नाम है जिसका नाम है गीतांजलि रेस्टुरेंट फास्ट फूड है यहाँ पे फास्ट फूड मिलते है।

इसमें एक सिम्बोल है चिन्ह है जहां पे एक लाइट जल रहा है।

यह एक शॉप है जिसमें बहुत सारे वैरायटी के --

चारो तरफ इस पेड़ इसमें लगे हुए है काफी झाड़ी जैसा है बहुत घना जंगल है।

यहाँ पे अं खुली हवा ले सकते हैं सांस ले सकते हैं क वॉक कर सकते हैं टहल सकते हैं छोटे बच्चों का।

ये टूटकर गिरा हुआ है और --